यह एक क्लासरूम है। .

यह एक खेल का मैदान है इसमें कई सारे ची कई सारी चीजें लगी हुई है खेलने की।

और ये बैल गावी टू --

ये विमान लैंडिंग की तस्वीर लग रही है।

यह किसी स्कूल की तस्वीरे लग रही है काफी सारे शिक्षक लग रहा है की शिक्षक है काफी सारी बच्चियाँ जो की छुप के --

और आंध्र बैंक ए.टी.एम. दिख रहा है एक्सिस बैंक ए.टी.एम. दिख रहा है कई सारी दुकाने की --